जो की गड्ढे के पास देख रहा है और ईट के पास से भी शायद एक लड़का खड़ा हुआ है बच्चे है यहाँ पे ।

ट्रैन की पटरी दिख रही है यहाँ पे ट्रैन है और यहाँ नीचे साइड में ग्राउंड टाइप है वहाँ पे कार वगेरा रखी हुई है।

ये कोई ब्रिज टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ से ट्रैन बाइक वगेरा निकलती है और ब्रिज से नीचे कोई नदी है बड़ी सी--

यहाँ पे मुझे एक बस दिखाई दे रही है बस के बाजु में एक अंकल खड़े हुए है और बस में बहोत सारे लोग दिख रहे है ।

लोग है बस के अंदर एक ही रिज़र्व बस है।

जो की खड़ी हुई है सिर्फ पिछे पेड़ पौधे है कोई शांत सड़क पर खड़ी हुई है शायद ।

और सिक्स नाइंटी नाइन ऑनवर्ड ई कोई